पेट्रोल पंप खाली पड़ा हुआ है यहाँ पर कोई भी नही है जो की ये खाली पड़ा हुआ है यहाँ पर कोई दिख नहीं रहा है यहाँ पर अंधेरा है चारो तरफ लाइट जल रही--

एक प्रतिमा बनी हुई है जो की महिला की है या किसी माताजी की है। यहा पर कोई दिख नहीं रहा है। खाली पडा हुआ है। दिवार है जो कि --

के लिए आते है झूला झूलने के लिए आते है खेल कूदने के लिए आते है और यहा पर आस पास पेड़ पौधे है बड़े बड़े खेत दिख रहे है पीछे ग्राउंड के दीवार के उस पार--

एक जिम है जिसमे एक वेक्ती जो की वर्कआउट कर रहे है यहा पर बहुत सारे वर्कआउट करते है। हेल्थ बनाते है हेल्थ इज लाइफ यहाँ पर डम्बल रखे हुए है एक्सरसाइज चल रही है और यहाँ पर--